और यहाँ पर बहोत सारी चट्टानें दिखाई दे रही हैं जो कि बहोत छोटे-छोटे उनमे पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ साइड में बहोत बड़े- बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं चारो तरफ से --

यहाँ बस एक टेबल लगा हुआ है। यहाँ उसके ऊपर में कपड़ा बिछा हुआ है जो कि पर्पल और व्हाइट कलर का है। यहाँ पर बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं जो कि व्हाइट कलर की दिखाई दे रही हैं। पीछे में रिबन लगा हुआ है पिंक कलर का।